बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं टावर दिख रहे हैं आदमी हैं बहुत सारे कार दिख रही है।

यह एक बोहोत बड़ी सड़क है जिसमें मुझे बोहोत सारे आदमी दिख रहे हैं रिक्शा दिख रही है गाड़ी दिख रही है।

यह एक श्री बागेश्वर महादेव का मंदिर है।

यह एक कमरा है जिसमें ये टेबल रखी हुई है।

घड़ी की आकृति बनी हुई है हर एक बॉक्स पर अलग अलग नाम लिखा हुआ है।

इसमें हरा हरा बहोत सारा घास है।

बसें दिख रही हैं गाड़ियां दिख रही है बाइक दिख रही है टावर दिख रहे हैं मस्जिद दिख रही है।

एक बैग है चप्पल है रिमोट है।

यह एक कपड़ों की दुकान है जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

य एक रूम है जिसमें बहुत अंधेरा है।

यह एक बहोत ही सुंदर मैरिज हाल है।

बहुत ही अच्छा डेकोरेट कर रखा है।